यहां पे कोई स्कूल है जिसमें एग्जाम चल रहा है और बहुत सारा डेस्क और बेंच लगा हुआ है जो रेड कलर का है।